इस फोटो में सामने बहुत सारे लोग हैं और यह सब्जी मंडी है।

रैक पर छोटे छोटे डब्बे छोटे छोटे जार और छोटे छोटे डब्बे भी है।

एक शटर गेट भी है सब जगह से बड़े बड़े जो की लाल रंग के है।

उन सभी रैको का रंग ग्रे है और बहुत सारे पेंट के डब्बे रखे हुए हैं जो की ऑरेंज रंग के है और नीचे--

बहुत सारे गन्ने रखे हैं और सभी का रंग काला और सफेद है।

नीचे खेत है एक जिसमें बहोत सारा पानी है और सामने बहोत सारे घास फूस जमे है।

एक खेतों में फसल लगा है और यह एक फोटो पहाड़ पर से लिया गया है।

इस फोटो में एक आदमी है और यहां एक सीमेंट से बना वो ब्लॉक है जो की ये काफी डिजाइन में बना है।

सामने वाले आदमी ने भी लाल टी शर्ट पहन रखी है और नीले रंग का जींस --

ये एक ट्रैक्टर पर है ये ट्रैक्टर का ट्रॉली है।

बहुत सारी खास फुस जमे हुए हैं और ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ है।

सामने एक पेड़ है बड़ा सा जो कि सूखा हुआ है।

नीचे जमीन पे कारपेट बिछे हुए हैं दोनों साइड हरे रंग के कारपेट है और बीच में एक लाल रंग से कारपेट है।

और ऊपर से पीले रंग के कपड़े से बांधा हुआ है और नीचे जमीन पे टाइल्स लगा है।

सभी में लोहे का ग्रिल लगा है बाहर से रोशनी आ रहा--

फूल है बहुत सारी जो अलग अलग रंगों की है और बीच में एक मूर्ति है जो की एक हाथ जोड़े है।

पूरा शीशा लगा हुआ है सब जगह से स्टार शेप के बॉर्डर पर पीले और ऑरेंज रंग का डिजाइन है।

दोनों साइड में छोटे छोटे गमले हैं जोकि भूरे रंग के हैं सामने एक आदमी खड़ा है।

सामने वाले बिल्डिंग में ए_सी का आउटडोर वाला यूनिट है।

सामने से दीवाल का रंग नीला और सफेद है।

बगल में एक लाल रंग का क्रेठर है जो की लाल और काला है और नीला भी।

इस फोटो में एक रूम है जिसके दीवार का रंग बैंगनी है।

सामने से वो क्लाक टावर का रंग हल्का लाल और सफेद जैसा है।

उनके ढक्कन काले पीले और सफेद है।

इस फोटो में एक दुकान है और सामने एक बड़ा सा काउंटर है।

पीछे जमीन पर मैट बिछा है जो की भूरे रंग का है।

बहोत सारे बड़े बड़े हरे पेड़ भी है सामने बहोत सारे सरिये लगे हैं।